इस तस्वीर में लोहे से बना एक पंडाल जैसा दिख रहा है।

वहां पर एक मनुष्य के एक हाथी के सूंड पर बैठकर अपनी तस्वीर खिंचवा रहा है।

वहां पर एक मनुष्य एक लड़का जो स्टेज पर खड़ा होकर गिटार बजा रहा है यहां बहुत सारे रोशनिया भी लगी हुई हैं।

जो बाईं ओर है उं उसका रंग कुछ नीला जैसा है और जो दाईं ओर है उसका रंग कुछ कत्थी जैसा है।

की बाईं ओर एक लोहे की खंबा दी गई है और दाईं ओर एक घर दिख रहा है।